बहोत से व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

बन ग्रीन कलर की है। बन रेड कलर की है। बन व्हाइट एंड ब्लैक है।